बोर्ड में डिपार्टमेंट ऑफ़ पोस्ट्स लिखा हुआ है।

आप देख सकते हैं यहां पर बड़े बड़े --

आप देख सकते हैं यहां पर एक चेयर भी है और साथ में एक मशीन भी है।

ऊपर से तारें भी दिखाई दे रही है।

इस पिक्चर में विजय पुस्तक भंडारी लिखा गया है।

एक गाड़ी को देख पा रहे है।

अपनी पूरी कोशिश कर रहा है।

सभी लोग अपना अपना काम कर र--

रक्षाबंधन जल्द ही आ रहा है।

जिसमें हमें कई प्रकार की र--

यह बिल्डिंग्स से बहोत अच्छी अच्छी लाइटें भी आ रही है।

इस पिक्चर में आप देख सकते हैं यहां पर--

यहां पर ए_सी लगा हुआ है।

इस पिक्चर में एक मूर्ति है।

यह दोनों केक इतने सुंदर हैं कि इन्हें देख के मन ललचा रहा है।

एक केक येलो कलर का है जिसमें दो फूल लगे--

और साथ मे पीछे पेड़ पौधे दिखाई दे रहे है यह बहोत--

और यहां पर एक गेट है नजर आ रहा है।